गोभी रखा हुआ दिख रहा है कच्चे केले रखे हुए दिख रहे हैं।

जो है रोड के साइड में जमीन में अम्मा बैठी हैं कुछ प्लास्टिक का सामान लिए हुए उनके पास बहुत सारे प्लास्टिक के मग हैं।

घर दिख रहा है पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

एक ब्लू ब्राउन कलर का टेबल दिख रहा है टेबल पर गुलदास्ता कुछ चीजें रखी हुई हैं ब्राउन कलर का सोफा दिख रहा है।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

बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है लाइट का खंबा दिख रहा है कुछ बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं।

दो आदमी एक बोर्ड लगा रहे हैं जिसपे स्वामी विवेकानंद सामुदायिक भवन लिखा हुआ है।

इस इमेज में हमें एक बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है ऑफिस में जो है ब्राउन कलर की टेबल ए रखी हुई दिख रही हैं।

शॉप की विंडोज हैं वो जाली की विंडोज हैं।

सब्जी रखी हुई दिख रही है भिंडी दिख रही है बेगन दिख रहे हैं करेले दिख रहे हैं गाजर दिख रहे हैं लोकी रखी हुई दिख रही है ककड़ी दिख रही--

एक स्विमिंग पूल दिख रहा है स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ दिख रहा है कुछ छोटे पेड़ दिख रहे हैं गमले में लगे हुए कुछ बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं एक झूला डला हुआ दिख रहा है।

आसमान दिख रहा है एक वाइट कलर का घर दिख रहा है लाइटिंग दिख रही है।

इस इमेज में हमें जो है एक स्टेज दिख रहा स्टेज के पी स्टेज तो है।

इस इमेज मे हमें एक जो है बड़ा सा येलो और व्हाईट कलर सा पेंट चर्च दिख रहा है चर्च के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख रहीं हैं।

इस इमेज में हमें कच्चा रोड दिख रहा है दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

एक बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का जिसपे लिखा है द अर्बन ग्रीन्स --

ब्रिज दिख रहा है लोहे की रेलिंग दिख रही है खंभा दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

एक जो है शॉप दिख रही है जहां कुछ पानी की बॉटले कोल्ड ड्रिंक की बोटले रखी हुई हैं बाहर एक ब्लू कलर की कैरेट रखी है ब्लैक कलर की डस्टबिन एक आंटी जो है झाड़ू हैं।

एक गार्डन दिख रहा है गार्डन में एक फुब्बारा लगा हुआ है जिससे--

इस इमेज में हमें एक बड़ा सा तलाव दिख रहा है लाइट के तार जाते हुए दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

कुछ दो एक्टिवा खड़ी हुई दिख रही है। एक लड़का जाता हुआ दिखा रहा है। एक बिल्डिंग दिख रही है। कुछ जो है डॉग दिख रहे है दो।

कुछ पेड़ दिख रहें आसमान दिख रहें एक कार खड़ी हुई दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक बड़ी सी शॉप दिख रही है शॉप जो है--

वो प्लास्टिक की और बर्तनों की शॉप है शॉप में एक अंकल खड़े हुए हैं।

इस इमेज में हमें जो है एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में जो है कुछ पुजारी बैठे हुए हैं कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं ब्राउन कलर केकुछ जो है तस्वीरें लगी हुई है जिन पर हार चढ़ा हुआ है।

गर्ल्स अअ -आ बॉयज बैठे हुए हैं।

और बाहर जो है कुछ एक्टिवा कुछ बाइक्स खड़ी हुई--

इस इमेज में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप पे कुछ गाढ़ियां खड़ी दिख रही है पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है।